क्योंकि ऐसा मैंने एक बार गया था तो रायगढ़ के हॉस्पिटल को देखा था और उसका जो खिड़की जो है वो सब कांच का लिया गया है और बहुत सुंदर दिख रहा है अब ऊपर की ओर तारवार लगा हुआ है।

यहाँ कोई पुराना पुराना खंडर घर है या कोई पुराना जगह जो इस स्मरण के लिए रखा गया है जैसे कि कोई राजा महाराजा का महल या कोई यहाँ कुछ था पहले जो खंडित हो गया है मकान --

घास जो बोलते हैं वो हरा हरा दिख रहा है ये ऐसा कोई जंगल का इमेज है या फोटो है फोटो लेने वाला अच्छा साफ नहीं लिया है।

पानी तो बहुत कम रहा है कम है और बगल में एक पेड़ है और बगल में घास बास भी है छोटा-छोटा है ज्यादा तो नहीं है तो क्या बताएं लेकिन--

क्योंकि ऐसा तालाब में मछली मिलता है और यहां सांप तो नहीं होगा बाकी मेंढक होगा और इस तालाब के अगल-बगल पेड़ पौधा है और पौधा को कलर पता नहीं चल रहा है क्योंकि फोटो लेने वाला धुंगला लिया गया है।

गिरने वाला है क्यूंकि जिसका जो ईट जो है वो गल रहा है एक जो लड़का है उसको देखने गया है ऐ कुछ ध्यान से देख रहा है इसके मन में कुछ चल रहा होगा इसलिए ये गौर से देखा रहा है।

और अगल-बगल कुछ बड़ा पेड़ है कुछ छोटा पेड़ है छोटा पेड़ का तो पत्ती है पर बड़ा जो पेड़ है उसका पत्ती है इस नहीं दिख रहा है नीचे जो घास है वो हरा-हरा दिखा रहा हैं ।

यहां नाव है यह नाव मोटर या पेट्रोल से चलता है यहां दो लोग हैं नाव चला रहे हैं।

ईशा मसीह का प्रार्थना चल रहा है। यहाँ बहुत सारे महिला लोग आए हुए हैं।

यहां दो और क्रीम है शायद यही क्रीम है जैसे लग रहा है और इस क्रीम को लगाने से चेहरा बहुत सुंदर दिखता है चेहरा निखर जाता है।

यहाँ कुछ कारखाना है यहाँ कुछ कारखाना में कुछ सामान बन रहा है और यहाँ कुछ कोयला जैसे है।